यहाँ फरसी ज्योति दिखाई दे रही है। ऊपर परदे लगे दिखाई दे रहें हैं।

तीन तो मंजिल है मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है रेंड कलर का इसमें खिड़कियाँ दिखाई दे रही है इसमें एक पम्पलेट लगा है।

इसपे एक सोफा ब्लैक कलर वाला रखा दिखाई दे रहा है तथा यहाँ कई लाइटें दिखाई दे रही है नीचे सीढ़ियां दिखाई दे रही है तथा फर्श पे यहाँ ब्लैक कलर के सोफे रखे है तथा व्हाइट कलर की चेयर त रखी है।